एक बिल्डिंग में लाइट जल रहे है रेड कलर का लाइट जल रहे है एक इसमे फोटो दिख रहा है और इसमे एक बादल ऊपर हरे हरे बादल दिख रहा है लाइट दिख रहा।

और एक खिड़की देख रहे है हमको और यह एक है --

पार्क है पार्क में हरी- हरी घास दिख रहा है एक छोटा सा पुश का घर दिख रहा है घर के आगे एक खंबा दिख रहा है।

एक बाइक दिख रहा है इसमें एक पे पेड़ लगा हुआ है पीछे में।